जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने बहुत सी जगह है जिसमें ईट बिछाया हुआ है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस घर का रंग सफेद रंग है और उस--

एक चेयर में एक आदमी बैठे हुए हैं जिन्होंने पर्पल कलर का शर्ट और काला कलर का पेंट पहना है।

यहां पर एक चेयर लगे हुए हैं जिसका रंग काले रंग का जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस दुकान के बगल में और एक कपड़े की दुकान है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर सामने में एक लोग बाइक में बैठे हुए हैं जो ने जिन्होंने पीला रंग का कपड़ा पहना है।

और उसे ड्रावर का रंग हल्का सा सफेद चॉकलेटी कलर का है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस रूम के दीवार का रंग काला और हा--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक कंप्यूटर लैब है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर चार चेयर रखे हुए है जैसे कि मैं देख पा रही हूं वो चार चेयर में से तीन चेयर में --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

पेट्रोल पंप का रंग लाल और नीला रंग है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक लोग खड़े हैं जैसे कि मैं --

ऊं पहाड़ बने हुए हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं पहाड़ के ऊपर हरे भरे पेड़ पौधे भी है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर सामने में डिजाइन है जो नीला और सफेद रंग का है।

जैसा कि मैं देख पा रही हुँ यह एक सुबह का समय है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर मेला लगा हुआ जैसे कि मैं देख पर यहां पर चार तारा माछी है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर साम--

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर तीन कार लगी हुई है जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर पुलिस खड़ी है जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े है जैसा की मैं देख पा रही हूँ इस बिल्डिंग में ।

टी शर्ट पेहने हुए है जैसे की मैं देख पा रही यहां पर खाने पीने की चीज की दुकान है जैसे की मैं देख पा रही हूं सामने दो डब्बे में चॉकलेट रखे हुए हैं जैसे की मैं देख पा रही यहां पर--

और कुछ लोगों को प्रोजेक्ट समझा रहे हैं जैसे की देख पा रही हूं टेबल में बहुत सारे बुक रखे हुए हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि यहां पर एक कंप्यूटर रखे हुए है जैसे की --

बैनर लगी हुई है उसमें कुछ लिखे गए हैं और उसमें लिखा है पार्किंग की अनुमति नहीं है।

सामने एक छोटी सी तालाब है जिसके पानी का रंग नीला रंग का लग रहा है जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने--

सामने एक दिवार बनी हुई हैं जो एक जंग जैसी लगी हुई हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ --

यहां पर कुछ हरे भरे पेड़ पौधे है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर कुछ कुछ घर है जैसे कि --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारे अलमारी और सोफे रखे हुए हैं ऐसे देख पा रही हूं सामने में एक टेबल रखी हुई है जिसका रंग कथा रंग का--

यहां पर ओर एक लोग बैठे हुए हैं जो नीला रंग के शर्ट पहना जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने एक औरत --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पे बहुत प्रेसर हूं में जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर सामने में बहुत सी भच्‍छी भट्टी हुई है जैसे कि मैं देख पा रही हूं --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहां पे कपडे टंगे हुए हैं जिसका रंग बैगनी और सफेद रंग का हैं --

इस मैदान में एक साइड पूरा खाली है और एक साइड महाकाई के पेड़ लगे हुए हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं--

जैसा कि मैं देख पा रही यह दिन का समय है जैसे कि मैं देख पा रही यहां पर चार पांच लड़के खड़े है जो सेम ड्रेस पहने हुए हैं।

जैसे कि हम देख इस बेड के चादर का रंग सफेद रंग का है और तकिया के कवर का रंग सफेद रंग का है।

यहाँ पर सीड़ी बनी हुई जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इस मस्जिद का रंग सफ़ेद रंग का है जैसे कि मैं देख प रही हूँ।

जैसा की मैं देख पा रही है एक सुबह का समय है जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर सामने में एक डिज़ाइन सा गेट बना हुआ है जैसा की मैं देख पा रही हूँ दोनों तरफ गेट के हंस बने--

इस दुकान के ऊपर एक घर बनी हुई है जिसका रंग हरा रंग का है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर सामने में एक साइकिल है जैसे कि मैं--